घर का डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर किया गया है अच्छा-अच्छा पेड़ लगाए है दो-तीन पेड़ ही नज़र आ रहे है बाकी ये पेड़ बताने का है।

यहां आपको है हेयर स्टाइल का एकदम डिजाइन खतरनाक लुक देना चाहते है होंगे इसलिए अभी तक शुरू नई किए।

यहां पे चर्च के नीचे जोकि बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हुई है लगता है ये एक मोड़ है जहां पर मोड पे--

कैमरा मेन ने आके यहाँ की तस्वीर क्लिक करली होगी इस वेबसाइट पे अपलोड क्र दी होगी आप देख सकते है यहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियो ने--

लिस्ट कितना है प्रोग्राम यहाँ पर डांस किया है एकदम लास्ट के अंत में अपने यहाँ पे कैमरामैन ने अपनी --

किसी इसका खाई हैं ये पता नहीं चल रहा हैं लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं गाड़िया ही गाड़िया नज़र आ रही हैं चारों तरफ--

इसके साइट में एक मारुति का मोटर भी लगा हुआ है जिसे भी ठीक करता है ये पाठीक --

इस तस्वीर को देख कर लग रहा है की ये कोई यहां पर किराना स्टोर जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है यहां पर हम देख सकते हैं।

एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है दो पेड़ शायद दो पेड़ के बीच में ये टाइल्स को लगाया गया है।

बहुत लोग नहाने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही लोग जो है की छुट्टियां मनाने के लिए आये हुए हैं।

एक प्लेट के सामने दो गिलसे भी रखी हुई है एक इमेज है।

ये तस्वीर रहा है मुझे किसी होटल का हो सकता हैं हम देख सकते हैं दो--

ए श्री राम के नाम से हीच बहता हैं इसलिए यहाँ पे पानिया बहोत ही ज्यादा--

तब यह व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न एरोप्लेन के सामने --

फोटो खींच ली जाए आप देख सकते है एरोप्लेन के सामने इनका --